और पीला कलर और सफेद कलर और बहुत ही अच्छा से उम बहुत ही भीड़ है यहाँ पे लोगो की क्योंकि लोग खरीदने आए हैं यहाँ --

यह फूल का मंडी है।

जिसमें से कुछ मछलियों का पेट काट दिया गया है सर काट दिया गया है।

जहाँ पे पलंग भी बहुत स्टाइल वाला है और कंबल भी रखा हुआ है दो तकिया है।

बहोत सारा खादान वगैरह जाता है। एक शहर से दूसरे शहर में जाता है और यह अभी रेल स्टेशन पे खड़ा है और यहां पे थार वगैरह भी दिख रहा है और यहाँ उम घासें उसे भी देख --

यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है यह पार्क डिजाइन डिजाइन का बनाया हुआ है इसमें घास को बारिकी से काट के सजाया गया है छोटे-छोटे पेड़ लगा के इसको उ कटाई-छटाईं कर के और यह कॉलेज है।

जो अपने महनत कर रहें हैं यहाँ गिट्टी --

यहाँ भी लग रहा है तुरंत जिम ओपन हुआ है और यहाँ कुछ लड़के-लड़कियाँ बैठे है और कुछ लोग जिम कर रहे है यहाँ बहुत सारा पेड़ भी है।

गोधूली का टाइम हो गया है अंधेरा हो रहा है तो सूर्य डूब रहे और दो खजूर का पेड़ है।

और बहुत सुंदर-सुंदर बेडशीट है यहाँ पे जो देखने में भी सुंदर लग रहा है और अच्छे से रखा हुआ भी है फिर बेडशीट को --